और ओ कोट पहनी है माक्स लगाई है।

तीन चार युवक ने बाल कटवा रहे हैं कोई काट रहा है।

नीचे पानी है घांस भी जमा है।

और इधर गार्ड का रहने वाला जगह है।

और उधर स्कूल भी है बहुत बड़ा है।

पीला लाइट भी चल रहा है रेड साइकिल है हरा साइकिल है ब्लू साइकिल है उधर--

कार का रंग ब्लैक है।

और इधर कुछ छरीया भी है गिरा हुआ।

बाइक लाल कलर का भी है ब्लू कलर का भी है। नीचे मैट ब्लू कलर है और टाइल्स व्हाइट कलर है।

पीछे बैठने वाला भी है पाइप भी दिख रहा है।

गोल्डन कलर के डब्बा में फूल रखा हुआ--

दोनों तरफ फूल भी है।

द लाइन का मीटर है बोर्ड है।

दवाई सर्दी का मलेरिया।

और इसमें लिखा है आई केयर चश्मा घर--